इस चित्र में बहोत बड़ा पेट्रोल पंप है।

एक इंसान बच्चे को पाए हुए खड़ा हुआ है।

इस दुकान के पीछे बहुत बड़ा पीपल का पेड़ लगा हुआ है।

खिलौने की गाड़ी दिख रहे हैं जिसमें व्हाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है।

इस चित्र के अंदर एक बड़ी सी रोड दिखाई दे रही है।

और एक सीट से बनी हुई नीचे--

इस चित्र के अंदर एक बड़ा हॉल है जिसमें व्हाइट टाइल्स है।

टेबल है और दीवाल पर एक बड़ी दर्पण लगी हुई है।

और तीनों के बाहर इंसान खड़े और बैठे हुए हैं।